इसके इस कंधे पर बैग लटका हुआ है दो--

यह गेस्ट हाउस है दो आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

और हरे रंग का कारपेट है अंदर की तरफ अंदर अ अंदर बाहर हरे रंग का कार्पेट है।

यहां पे अह अह बाहर अंदर की तरफ एक--

और व्हाइट पिंक व्हाइट फ्रॉक पहन रखी है ।

ये ये यहां पर टाटा मोटर्स लिखा हुआ है और यहां तीन चार तीन चार ट्रक खड़े हुए हैं।

अच्छा आप तंदूरी का बोर्ड लगा हुआ है।

एक के हाथ में कुछ लगा हुआ है यहां काफी सारे पेड़ पौधे--

और-र यहाँ पर काउंटर पर कुछ सामान और बोतल भी रखी हुई है एक आइस फ्रीज है यहाँ पर काफी सारे पाउच लटके हुए हैं।

अ अ बोतल वगैरह रखने की कोको कोला रखने के लिए एक फ्रि--

अ बहुत अ बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं बिजली के तार हैं।

रड लगा हुआ है लाइट भी है और एक आदमी खड़ा हुआ है.

ये एक दुकान है यहां पस बे बेकरी का बोर्ड लगा हुआ है.

इ यहाँ चश्में वाला लिखा हुआ है.

ब्लू पेन रखी है और यहाँ एक पंखा भी है ब्लैक कलर का विंडो लगी हुई है कैलेंडर लटक रहा है।

यहां एक गंगा जी हैं और ऊपर पुल है पुल के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ल--

काफी सरे कार के दुकान के यहाँ पर साइकेल--

य-यहां पर काफी सारे लैपटॉप रखे हुए हैं।

जिसमें पेड़-पौधे हैं और लाइट में ब्लब लगे हुए हैं.

यहां पर अअ कुल उसके ठेले में कुल्लड वगैरा अअ तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है एक लड़का खड़ा हुआ है।

रखी हुई है इसमें एक डिब्बा रखा हुआ है कुछ बिस्कूट रखे हुए हैं कुल्लर रखे हुए हैं.

लाइटी हुई लगी हुई है एक एक एलईडी भी लग रही है यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है उसके बाहर--

एक लड़का बैग उर टांगे हुए खड़ा है --

और और एक लड़के के हाथ दो लड़कों के हाथ में सौफ्टी लगइ है एक कुछ सड़ियां भी दिखाई दे रही है कुछ सड़ियां ग्रीन कलर --

और एक टेबल के ऊपर काफी सारी किताबें रखी हुई है.

साइड से किताब रखी हुई है ए सी भी है लाइट लग रही है यहाँ।

हरे रंग की और रे रेड कलर की साड़ी पहन रखी है.

और यहां एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है.